लोगों ने कपड़े पहने हैं सर्दियों के--

सफेद रंग के हैं लाल रंग का पेंट होया हुआ है।

एक एंबुलेंस खड़ी है लगता है इस औरत में का इस होटल इस हॉस अस्पताल में काम हो रहा है।

घास लगी है पीले फूल है।